इस क्षेत्र में हमें एक बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

हरे नेट का एक शेड बना हुआ है।

इस चित्र में हमें एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक व वाइट कलर की दीवार पर एक एल_ ई_ डी टी_ वी लगी हुई है।

एक अंकल सर पर वाइट कलर का रुमाल बांधे हुए हैं और एक अंकल मास्क लगाकर कुछ देख रहे हैं वह हरा स्वेटर पहने हैं।

जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम।

और इसके पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने रास्ते पे कुछ लोग जा रहे हैं।

एक एल_ ई_ डी_ रखी हुई है तीन-चार कुशन रखे हुए हैं।

उस पर हरे कलर की नेट बंधी हुई है।

इस चित्र में हमें बहुत ही खूबसूरत बादल नजर आ रहे हैं।

हरी-हरी घांस उग रही है और बिल्कुल साफ रोड पड़ा हुआ है अंदर बहुत से खम्भे लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें कुछ माल्टियां दिखाई दे रही हैं मल्टी के पीछे एक पहाड़ है पहाड़ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और इसके पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

और बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं यह बहुत बड़ा जंगल है।

जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे गामलों में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

वो घर के सामने चार-पांच फोर व्हीलर कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

दो डॉक्टर बैठे हुए हैं एक सोफे पर।

जिसमें एक बहुत डबल बेड का बेड रखा हुआ है।

और चार लाइटें दिखाई दे रही हैं।

दो बड़े बड़े पिलर फूलों से सजे हुए हैं।

इस चित्र में हमें बैंक की छोटी सी शाखा दिखाई दे रही है।

और इस बैंक के अंदर कुछ महिलाएँ खड़ी हुई हैं।